उधर कोई खेल रहा है कूद रहा है दूनो आदमी बतिया रे है और एक आदमी पगड़ी पेहेनले है।

यह तो एक फोटो लग रहा है कोई आदमी गिरा है पीछे से ट्रेन से लग रहा है।

वो तो पेर जैसा लग रहा है ऐदर फोटो खींचा है मोबाइल से खींचा है।

ऐसी दवाल लग रहा है ऊपर से पंखा है ब्लैक कुछ वाइट है इधर ब्लैक है ऑरेंज है।

उधर कोई खा रहा है उधर कोई ऐसी लगा हुआ है इधर कोई लाल का एसी लगा हुआ।